दो तीन ज़ेबरा भी दिखाई पद रहा है और आस-पास बहुत लम्बे-लम्बे पेड़ दिख रहे हैं ज़ेबरा एक गेट के अंदर में बंद भी दिखाई दे रहा है।

ये किसी सैलून की तस्वीर नजर आ रही है जिसमें कुर्सी पर एक लड़का बैठा हुआ मोबाईल चला रहा है।

सामने में उसका पर्स और चसमा रखा हुआ हैं केयची भी रखी हुई है मेज पे। आस-पास कुछ समान रखा हुआ। वो अपने चेहरे पर कुछ लगा कर के बै --

पानी का रंग कुछ हरे टाइप का दिख रहा है और नीला लाल पीला हरा कुछ सजा हुआ दिख रहा है।